एल.ई.डी. लगी हुई है पंखा दिख रहा है चॉकलेट्स के डब्बे दिख रहे है और डार्क फैंटेसी बिस्कुट्स तेल दिख रहे --

पीछे बहुत सारे मकान नजर आ रहे है और घरों मे बंग अ गम-गमले लगे हुए है और मशीन्स ल --